basics of shell scripting के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
* system variables
* यूज़र डिफाइंड variables और
* keyboard से यूज़र input स्वीकारना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए कृपया दर्शायी website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 operating system और
* gnu bash version 4110
ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे अधिक की सलाह दी जाती है
अब variables के परिचय के साथ शुरू करते हैं
* bash variables जानकारी के लिए अस्थायी storage प्रदान करता है
* ये variables program के जीवनकाल में प्रयोग किये जा सकते हैं
variables दो प्रकार के होते हैं system variables यूज़र डिफाइंड variables
system variables ये स्वयं लिनक्स bash shell के द्वारा बनाये और रखे जाते हैं
ये capital letters यानि बड़े अक्षरों से परिभाषित होते हैं
आमतौर पर उपयोग किये गए system variables हैं
* bash _ version hostname
* home आदि
अब अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
अब type करें set और enter दबाएं
यह सारे system variables को दिखायेगा
वैकल्पिक रूप से सारे system variables को देखने के लिए आप env या printenv type कर सकते हैं
अब मैं prompt को साफ़ करता हूँ
double type करें echo space double quotes में dollar साइन hostname
और enter दबाएं
system का hostname प्रदर्शित किया जायेगा
अब हम होम डिरेक्टरी के पूरे path का path लगाएंगे
type करें echo space double quotes में dollar साइन home बड़े अक्षरों में
enter दबाएं
यूज़र का home directory का पूरा path प्रदर्शित किया जायेगा
अब टाइप करें
echo स्पेस डबल कोट्स में home बड़े अक्षरों में
enter दबाएं
यह सिर्फ home दिखायेगा home variable की value नहीं दिखायेगा
अतः variable की value दिखाने के लिए प्रत्येक variable के शुरुआत में dollar साइन $ प्रयोग करना ज़रूरी होता है
अब slides पर वापस आते हैं
यूज़र डिफाइंड variables
* ये variables यूज़र के द्वारा बनाये और संभाले जाते हैं
* यूज़र डिफाइंड variables के नामों के लिए अपरकेस यानि बड़े अक्षरों से बचना हमेशा अच्छा विचार है
* यह यूज़र डिफाइंड और system variables के बीच में अंतर करने को आसान बनाता है
अपने terminal पर वापस आते हैं
type करें username यूज़रनेम equal to साइन sunita
ध्यान दें कि username equal to साइन और sunita के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए
अब enter दबाएं
यूज़रनेम वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए
type करें echo space double quotes में dollar साइन username यूज़रनेम
enter दबाएं
यह आपके terminal पर sunita दिखायेगा
variable की value unset की जा सकती है
अपने terminal पर वापस आते हैं
unset unset command प्रयोग करके variable की value unset की जा सकती है
इसके लिए रचनाक्रम unset variablename है
अब पिछला उदाहरण प्रयोग करते हैं जहाँ हमारा variable username है
terminal पर जाते हैं अब type करें unset space username enter दबाएं
double जाँचते हैं type करें echo space double quotes में dollar साइन username enter दबाएं
terminal पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जायेगा
इसका मतलब है कि variable यूज़रनेम की value हटायी जा चुकी है
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
global और local variables
* shell script में यूज़र डिफाइंड variables globally या locally घोषित किये जा सकते हैं
* default रूप से सारे variables global हैं
* इसका मतलब function के बाहर और अंदर उनकी values समान बानी रहती हैं
अब सीखते हैं कि variables को globally और locally कैसे घोषित करते हैं
terminal खोलें और type करें
gedit space g _ underscore variable sh space & ampersand sign
gedit text editor है g _ underscore variable sh हमारी file का name है
और & ampersand prompt को खाली करने में प्रयोग होता है
enter दबाएं
यहाँ अपने g _ underscore variable sh file में दिखाए गए की तरह code type करें
अब मैं code समझाता हूँ
hash और एक्सक्लमेशन चिन्ह के साथ पहली line shebang या bang line है
username = sunita यूज़रडिफाइंड variable है और यह globally घोषित किया गया है
echo function के बाहर string को प्रदर्शित करेगा और
dollar username variable यूज़रनेम की value print करेगा
इस प्रकार हमने bash script में function परिभाषित किया
functions के बारे में विस्तार में चर्चा हम आगे के tutorials में करेंगे
यह function का ढाँचा है
यहाँ username की value के साथ एक अन्य message inside function प्रदर्शित किया जायेगा
यहाँ हम function को कॉल करते हैं
यह हमारा code है अब इसे निष्पादित करते हैं
terminal पर वापस आते हैं
अब prompt को clear करते हैं
सबसे पहले अपनी file को निष्पादन योग्य बनाने की आवश्यकता है
type करें chmod space plus x space g _ underscore variable sh enter दबाएं
अब type करें dot slash g _ underscore variable sh
enter दबाएं
output देखें
फंक्शन के बाहर यूज़रनेम वैल्यू sunita लेता है
function के अंदर भी यूज़रनेम समान value sunita लेता है
ऐसा इसलिए है क्योंकि function के बाहर यूज़रनेम को globally घोषित किया गया था
आगे सीखते हैं कि variable को locally कैसे घोषित करते हैं
type करें gedit space l _ underscore variable sh space & ampersand sign
enter दबाएं
यहाँ अपने l _ underscore variable sh file में दिखाए गए की तरह code type करें
अब मैं code समझाता हूँ
function के अंदर एक अतिरिक्त code की line को छोड़कर code पहले की तरह समान है
function block के अंदर हमारे पास एक line है local space username equals to jack
यह variable यूज़रनेम locally के लिए एक नयी value नियुक्त करता है
अब terminal पर जाते हैं
अब file को निष्पादन योग्य बनाते हैं
टाइप करें chmod space plus x space l _ variable sh
enter दबाएं
type करें dot slash l _ variable sh
enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है
function के बाहर यूज़रनेम value sunita लेता है
जबकि function के अंदर यूज़रनेम value jack लेता है
ऐसा इसलिए है क्योंकि function के अंदर यूज़रनेम इस value को locally नियुक्त किया गया है
अब जल्दी से देखते हैं कि keyboard से यूज़र input कैसे प्राप्त होता है
read command keyboard से input स्वीकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है
यह यूज़र डिफाइंड variable को एक input value नियुक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है
read command का रचनाक्रम है
read space hyphen p space double quotes में prompt
ध्यान दें कि prompt बस एक string है जो यूज़र input के लिए प्रतीक्षा करता है
आप अपनी string से इसको बदल सकते हैं
अब terminal खोलते हैं
type करें gedit space read sh space & ampersand sign
enter दबाएं
अपनी readsh फाइल में प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें
अब मैं code समझाता हूँ
इस उदाहरण में यूज़र के द्वारा keyboard से input दिया गया है
यह bang line है
यहाँ p एक नयी लाइन के बिना prompt दिखाता है और keyboard से input लेता है
यूज़र input variable यूज़रनेम में संचित किया जायेगा
echo command message दिखाता है
hello और keyboard से यूज़र द्वारा प्रविष्ट किया गया name
अब हम program निष्पादित करते हैं
अपने terminal पर वापस आते हैं
type करें chmod space plus x space read sh
enter दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश readsh एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित होता है enter username
मैं ashwini type करुँगा enter दबाएं
message hello ashwini प्रदर्शित होता है
ashwini input value की तरह यूज़र डिफाइंड variable यूज़रनेम को नियुक्त किया गया था
अब अपनी slides पर जाते हैं और सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
* system variables
* यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स
* keyboard से यूज़र input स्वीकारना
एक नियत कार्य में
निम्न सिस्टम वेरिएबल्स प्राप्त करने के लिए एक सरल bash प्रोग्राम लिखें
* pwd और * logname
एक सरल bash program लिखें
* यूज़र से username पूछना
* अगर यूज़र 10 seconds के अंदर कुछ भी प्रविष्ट नहीं करे तो program exit करना
* नोट : readhyphen t 10hyphen p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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद